मे एक इ वाहन है एक दरवाजे के अंदर खड़ी दिखाई दे रही है।

सामने एक सुन-सुखी पड़ी नदी है नदी के ऊपर एक लोहे का रेलवे पुल बना है।

उस दुकान के अंदर दो तीन पहिया की वाहन खड़े नजर आ रहे हैं।

यह किसी ए_टी_एम के सामने की तस्वीर है जिसके दरवाजे काँच के बने हुए है।

उसके अंदर बहोत सारे कॉस्टमेटिक सामान दिखाई दे रहे है।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

पीछे बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है।